बहुत सारी औरतें हैं यहाँ पे दिख रही एक आदमी जो है एस_बी_आई ए_टी_एम के नीचे खड़ा हुआ है एच_डी_एफ_सी का जो ए_टी_एम है उसके नीचे खड़ा है।

यह पिक्चर में जो है अपना ये डांस स्टूडियो लग रहा है।

केला भी आगे में है लेकिन केला पे फोकस नहीं किया गया है और अंगूर पे ज्यादा फोकस किया गया है अंगूर जो है एकदम काला वाला है।

यह गाय गौशाला है क्योंकि ग गाय वो सब है यहाँ पे।